एक बैनर लगाकर पार्किंग रिसेप्शन की एरो भी बनाई हुई है।

उसके आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पानी की पाइप भी दिख रही है और बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक स्टेडियम के बाहर का चित्र दिखाया गया है।

बिल्डिंग के ऊपर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय रांची लिखी हुई है।

एक बड़ी सी माला बनाकर टंगी हुई है।

बच्चों के स्लाइडर लगे हुए हैं और एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।

लोग खाना लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत से व्यक्ति नजर आ रहे हैं बहुत सारे लाइट जल रही है।

इस चित्र में एक रूम दिखाई दे रही है जिस रूम में दो सोफे रखे हुए हैं और एक फिस टैंक रखी हुई है।

एक विंडो भी दिख रही है जिस पे कर्टेन्स लगे हुए हैं।

एक टेबल भी रखी हुई हैं एक वॉल पे पेंटिंग भी लगाई हुई हैं एक दो शो पीस भी दिख रहे है।

अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पे कुछ घास के पौधे दिख रहे हैं और पेड़ भी नजर आ रहे है।

जोकि स्लाइडर भी लगाए गए हैं झूले भी लगाए गए हैं।

इस दृश्य में एक बैनर दिख रही है जिस पे श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय लिखी हुई है।

बहुत सारे लोग सीढ़ी पे बैठे हुए हैं।

आगे ब्लू कलर की मैट बिछी हुई है और कुछ व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं।

इस शोरूम में एक गमले में पौधे भी लगे हुए हैं एक व्यक्ति का आधा हाथ भी दिख रहा है।

उस बिल्डिंग के पास बहुत सारी रखी हुई गमलों में पौधे दिखाई दे रहे हैं।

नदी के किनारे पर बालू दिख रहा है और बहुत से घास और बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं।